उपर में थोड़े थोड़े उजाले भी दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक बड़ा सा टेबल भी है।

इस कैफे पर बहोत सारे लाइट्स जले हुए है।

मुझे इस तस्वीर पर एक छोटा सा बाजार दिखाया गया है जहां पर बहुत सारे लोग हैं।

कुछ लोगों के चेहरे को धुंधला किया गया है।

अलग सब्जियां भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर एक छोटा सा बगीचा दिखाया गया--

यहां पर बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं जिसका रंग काला है।

यहां पर बहुत सारे गाड़ी भी रखे हुए है।

मुझे इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

अंदर एक बड़ा सा फ्रिज भी है।

आईने के चारों ओर एक बहुत सारे पत्ते सजे हुए हैं।

एक का रंग काला है और एक का रंग नीला है।

यहां पर छोटे छोटे चिड़िया भी रखे हुए है।

उस पर बहुत सारे सामान भी रखे हुए हैं।

और कुछ मजदूर ऊपर में है और कुछ मजदूर नीचे में--

जो मजदूर घर में है वह अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

नर्सरी के बाहर पर भी कुछ लिखा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं।